वह सामने में हाइलाइटर दिख रहे है मारकर दिख रहे है पेन दिख रहे है।

यहां एक घर है जिसमें किसी से का लगा हुआ ऊपर करकट सजा हुआ है। और पेड़ है अंदर कर है। दिवाल है लोहे का गेट लगा हूआ हैहै और उपर मे कूछ डिजाइन किआ हूआ है लोहे--

फोटो है जिसमें कुछ लोग हैं और ऊपर सूर्य दिख रहे हैं पेड़ पौधे दिख रहे हैं पत्थर दिख रहे हैं बहुत सारे बहुत सारे पानी दिख रही है नदी दिख रही है

और वहत हि पयारा लग राहा है एह नजारा। इसमे कोइ वोट नेहीं है लेकिन एक वोद दिख राहा है। और उसपे कूछ लैक है यो कि वोटिं कर रहि है।